एक वाइट कलर का चर चका गाड़ी का हुड खुला हुआ है उसके ऊपर चढ़के एक आदमी और पास में खड़ा होके दो आदमी--

यहां पे उसका इंजन के ऊपर कुछ काम कर रहा है और लोग रिपेयर कर रहा है।

ये एक लड़का यहां पे के पास में खड़ा है दूर में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं जहां पे फ्लोर पे बहुत सारा सोफा हैं सोफा का बीच में एक एक करके टेबिल रखा हुआ है टेबिल के ऊपर--

बहुत सारे जो ग्लास है स्टील का जाग है सब रखा हुआ है।

और भी आदर्स ब्रांड का भी मोबाइल वगैरा एसेसरीज वगैरा बिकता है सैमसंग का भी लेनेवो का भी ओनोर का भी--

पूरा हाथ जोड़ करके यहां पे कुछ प्रैक्टिस कर रहा चल रहा है।

क्लीन जो स्काई होता है वो दिखाई दे रहा है वाइट कलर का स्काई है।

मोटर ट्रेनिंग मतलब जो गाड़ी का ट्रेनिंग सिखाता है जो ड्राइविंग --

यहां पे डॉक्टर का चेंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो वेटरिनरी ट्रटमेंट होता है यहाँ पे--

एक गाड़ी का का शोरूम है बाहर में बहुत सारे चर्चा का है छोटा छोटा लड़ी है।

पास में ट्रक की सरस्वती गणेश आरती माय सर देवी यहां पर रखा है इसके ऊपर--

यहां पे बहुत सारे एल_ई_डी टी_वी बड़ा बड़ा छोटा छोटा साइज का सजा हुआ है।

ये एक कारखाना का अंदर का चित्र है जहां पे एक अह ग्रीन टाइप का ऊपर में उड़ने के लिए झूला के रखा है।

यहां पर एक दो तल्ला बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहे सुंदर बिल्डिंग व्हाइट कलर का बिल्डिंग है।

उस सीढ़ी में बहोत सारे यहां पे पहन के व्हाइट कलर का हथकंडा पहन के खड़ा है।

मैट के पास बैठा है उसके पास में प्लास्टिक का चेयर है।

ये एक मार्ट है मार्ट में एक पीच बना हुआ है क्रिकेट खेलने का ये पीच में चोक दे के लाइन दे के रखा है यहां पे--

इस साइड में भी तीन विकेट है उस साइड में भी तीन विकेट है। पास में हरा कलर का घास है।

एक ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है और एक मालगाड़ी आ रहा है उसका इंजन ग्रीन कलर का है और सामने इंजन मारा है पीछे जो गुड्स का--

ब्लैक कलर के लहंगा पहन के लड़के लोग शेरवानी पहन के नृत्य कर रहे है।

हाफ पैंट पहन के व्हाइट टी शर्ट पहन के खड़ा है सामने में है।